इस इमेज में कोई इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है।

जिसके अंदर एक पेड़ लगा हुआ है अंदर कुर्सी लगी हुई अंदर और मूर्ति है।

ऊपर सामने चार साड़ी रखी हैं उसके नीचे साड़ी बिछी हुई है।

एक पीछे एक कारपेट बिछी हुई है जिसकी कलर व्हाइट एंड ब्राउन है।

यहां पर सामने सनसेट हो रहा है शाम का मौसम--

यहां पर इसके पुल के ऊपर काई जमी हुई है।

जो काफी बड़ी है अड़ोस पड़ोस में दो और मूर्ति हैं बीच में फाउंटेन के लिए तालाब बनाए गए साइड में एक पेड़ लगा हुआ है।

एक आदमी नीचे चलते जा रहा है दो आदमी टीन के ऊपर बैठे हुए पीछे एक बड़ा सा खेत बना हुआ है।

और काफी हरियाली है कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यहां से एक पाइप जा रहा है लेफ्ट साइड में। यहां पर कुछ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। कुछ गिट्टी पत्थर पड़े हुए हैं।

कच्ची जमीन है जिस पर छोटे छोटे पेड़ पौधे और घास उगी हुई है।

ये खंबा जा रहा है इसके ऊपर से तारे जा रही है।

कई जालीदार बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर मुर्गी भी रखी हुई है।

चार से पांच आदमी खड़े हुए हैं बीच में एक मोटरसाइकिल रखी हुई है और यहां पर एक साइकिल रखी हुई है शटर लगे हुए हैं जो बंद हैं।

ये टाइल्स लगे हुए जो इनके कलर ग्रे और रेड है।

ये पर्दे ब्लू कलर के हैं यहां पे शीशा लगा हुआ है।

इसके दीवाल बनी है जो नीचे से चिकनी और ऊपर से पत्थर वाली है।

शेर की गुफा नजर आ रही है।

नीचे एक पानी का नजर एक पानी पीने की जगह है।

यहां पे एक खंभा है जिसके पर मैट बालम बाग लिखा हुआ है।

जहां पर रंग बिरंगी लाइटें जल रही हैं।

टाइल्स वाली जमीन है और दो पत्थर व्हाइट और ब्लैक कलर के लगे हुए हैं।

जिस घर का कलर येलो एंड रेड कलर में है इसके पिलरे रेड कलर में हैं।

और एक ये रेड कलर की बिल्डिंग है और वहां पे एक वाइट कलर वॉल हुई है।

यहां पर बीस बीस सेंटर में कुछ झाड़ियां और छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हैं जहां पर फूल पौधे उगे हुए हैं।

यहां पर एक पुतला बैठकर बैठा हुआ है पैर के ऊपर पैर डालके जिसने कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पीछे कई सारे कपड़ा रखे हैं। पीछे एक पोस्टर छपा हुआ है लेडीज सूट का और ब्लैक कलर की स्क्रीन है वो।

काफी सारा सामान रखा हुआ जनरल स्टोर का पीछे कुछ सेल्फ में और सामान रखा हुआ है।

जहां पर एक खंभा उसमें तारे जा रही हैं बदली वाला माहौल है।

इमेज में एक मंदिर दिख रहा है और नीचे दो छोटे छोटे और मंदिर है।

नीचे दो छोटे मंदिर है एक बड़ा मंदिर है जो काफी गंदा है।

यहां पे एक बेंच रखी हुई है। दो बेंचे रखी हुई है।

यहां पर कई सारे लोग खड़े हुए हैं यहां चार पांच गाड़ियां रखी हुई है।

साइड मे एक टी_वी स्क्रीन लगी हुई है उसके ऊपर एक घड़ी लगी हुई है।

यह एक बुक स्टोर है यहां पर काफी सारी बुके रखी हुई हैं।

येलो कलर के बोर्ड पे लिखा हुआ है ए_डब्लू होस हाउस ।

यहां पर इसके लेफ्ट साइड और सामने साइड में दो स्कूल की बिल्डिंगे बनी हुई हैं।

इनका कलर येलो है और केधर पिलर लगे हुए जिनका कलर व्हाइट है।

जहां पर से एक अंदर साइड से रोड जा रही है।

यहां पर रेड कलर की अं एक रूम बना हुआ है।

यहां पे एक छोटी टेबल रखी हुई है जिस पर किताबें कापी रखी हुई हैं।

इस इमेज में एक आउटसाइड हाईवे नजर आ रहा है जिसके सामने कैफ़े बना हुआ है।

इमेज में हज़रत गंज स्टेश मेट्रो स्टेशन की इमेज है।

एंट्रेंस है यहां पे एलीवेटर लगा हुआ है साइड से साइडों में गमले लगे हुए हैं।

और ग्रीन कलर के पौधे लगे हैं छोटे छोटे। कुछ में फूल उगे पड़े हैं। साइड से रोड जा रही है। गीली रोड --

राइट साइड कॉर्नर में एक गेट और लगा हुआ है।

हरियाली छाई हुई है और पीछे खंबा जा रहा है तार वाला उसमें तार है।